यह एक पार्टी व्यू है। जहाँ पे कुछ लोग है । जो खाना बना रहे है पार्टी के लिए आस पास में सजावटे करी गई है।

जो इस कार को वॉश कर रहे है अच्छी तरीके से धो रहे है क्लीन कर रहे हैं इन्हे।

यह एक डांस अकेडमी है जहां पर बच्चे यहाँ डांस सीखते है।

यहा यहाँ एक छोटा सा पाउन्ड है। नाव लगी हुई है कुछ कुछ लोग है जो इस व्यू को देखने आए है।

यह एक मंदिर है जो पहाड़ पर है और लोग इस मंदिर में पूजा करने गए है और इन्जॉय कर रहे है।

जो फिश पकड़ने अ...शायद जा रहे है और आस-पास में पहाड़ है एक सुंदर सा।